कुछ लाइटें दिखाई दे रही हैं कुछ टेबल कुर्सी रखी दिखाई देरे हैं।

गला में एक आइडेंटिटी कार्ड लटकाया है और माथे पे--

और एक छाता दिखाई दे रहा है जो सफेद और लाल में है।

और यहां पर बहुत सारे टेबल चेयर जो लाल रंग में लगे हैं खिड़कियां दरवाजा दिख रही है जो कांच की है एक आदमी--

यह एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर में काले रंग की कुर्सियां लगी है।

यहाँ पे फूल दिखाई दे रहे हैं जिसमें सफेद और लाल रंग की फूलें हैं जो गुलाब फूले--

यहाँ पर बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है कुछ आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

आदमी दिखाई दे रहे हैं दो आदमी बैठा हैं और एक आदमी खड़ा है।

हर एक बेशिन बना है और कुछ लाइटें दिख रही है।

यहां पे कुछ किनारे में आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कार का शोरूम है यहां पे दो कार खड़ा है।

यह एक लकड़ी और बांस से बना हुआ एक ब्रिज है जहाँ पर बहुत सारे आदमी और औरतें आती जाती दिखाई दे रही है।

बहुत सारे सीरम परफ्यूम रखे हुए दिखाई दे रही है अब मेडल भी रखे हुए दिखाई दे रहा है।

एक काले रंग का टंकी दिखाई दे रहा है।

पीले रंग की कुर्तियां टंगी हुई दिखाई दे रही हैं।

कपड़े नीचे में रखे दिखाई दे रहा है एक सोफा दिखाई दे रहा है जो भूरे रंग का है एक ए_सी जो सफेद रंग का दिखाई दे रहा है कोना में कुछ लाइटें दिखाई दे रही हैं।

ये एक दुकान है जिसके बोर्ड पे लिखा हुआ है सि_टी स्कै --

अंदर में कुछ चिप्स कुरकुरे टंगे हुए दिखाई दे रहा है एक कांच का गेट दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी जो सफेद रंग का शर्ट पहने हाथ में फोन लिया कंधे पे एक बैग लिया हैं।

इसे लाइट से सजाया हुआ जो रंग-बिरंगे लाइट है जिसे पीले हरे नीले रंग के लाइट --

छोटे-छोटे मंदिलें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर पंडाल बना है पर्दे लगे हैं यहाँ पर गुब्बारे लगे दिखाई दे रही है।

ये एक खेत दिखाई दे रहा है जहाँ पर छोटे-छोटे पौधे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे है जो खेतों के अंदर है।

यहाँ पर एक बाल्टी दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का है।

लिखा हुआ है अंदर में एक लाल रंग का मशीन दिखाई दे रहा है।

और एक ए_सी दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का है।

यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है जो फोन में बात कर रहा है।

यहाँ पर दिवाल में ओम लिखा हुआ है एक खिड़की दिखाई दे रहा है।

लगा हुआ है एक पंखा दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का है।

यहाँ पर बहुत सारे डी_जे बॉक्स काले रंग के लगे हुए दिखाई दे रही है।

जो गौरमेट कॉलेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रही है और एक खिड़की दिखाई दे रहा है जो भूरे रंग का है।

और यहाँ पर उन्होंने एक बैनर लिया हुआ है जो काले रंग का है और आसमान बैगनी रंग का दिख रहा है।